सामने एक दुकान दिख रही है जिसमे बीच में एक टेबल रखी हुई है जो कथई कलर की है और उसके साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीले कलर की टी शर्ट पहने हुए है।

कत्थई कलर की साइड में शटर लगी हुई है और एक साइड काँच का सफेद गेट लगा हुआ है। उसके ऊपर एक नीला-सा बोर्ड लगा है जिसमें -

बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है और कई एक जगह हरी चटाई बिछी हुई है और साइड में ऐसे ही मिट्टी है बहुत --

पीले और सफेद परदो की झालर लगी हुई है सामने वो सीढ़िया बनी हुई हैं जो काले कलर --

लगी हुई हैं जो हरी पील --

सामने एक स्टेज है जिसपे तीन लड़कियां खड़ी हुई हैं। एक ए और इनके पीछे पर्दा लगा हुआ है जो नीले --

ब्लैक एंड व्हाइट नीला और आसमान दिख रहा है और सामने बहुत सारा ग्राउंड है जिस में हरि-हरी घांस दिखाई दे रही है और कुछ --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर ज्यादा हरी कहीं पर कम हरी घास है।

एक सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद कलर है जिसमें बीच में बड़ी -सी --

फिटनेस ऑन फायर जिम लिखा हुआ है। नीचे दो स्कूटी खड़ी हुई हैं और अ --

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी सफ़ेद-सफ़ेद दिख रहा है जिसके किनारे पे हरे-हरे अ अ अ कुछ पेड़ लगे हुए हैं और सामने दो --

हरा पेड़ दिखाई दे रहा है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीले कपड़े पहने हुए है और --

काला चश्मा लगे हुए है। नीचे कुछ लकड़ियाँ डली हुई हैं। ये सब ब्लैक एण्ड व्हाइट कलर की दिख रही हैं।

सामने बड़ी ऊंची बिल्डिंग ग दिख रही है जो पीले कलर की और जिसमे बगलों मे --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो ऊपर ग्रे और सफ़ेद कलर की दिख रही है बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जो हरे कलर का है जिसमें प्रतिमा --

सामने एक हाल की दीवाल दिख रही है जो क्रीम कलर की है जिसमें बीच में एक बड़ा गेट --